बहोत सारी महिलाएं व्हीलचेयर की हेल्प से ऐरोप्लेन तक चढ़ने का ट्रायल कर रहे है।

इसके ठीक बगल में एक बिल्डिंग है जिस पर पीले कलर से पेंट किया गया है उसके ठीक आगे दो लड़के खड़े हैं।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

रेफ्रिजरेटर के अंदर बोहोत सारी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम रखी हुई है। बाहर दो गाड़ी भी पार्क की गई हैं। दीवार पर एक पोस्टर भी लगी हुई है।

सामने एक पत्तियों से चार पैर वाला जानवर बनाया गया--